और सामने कुछ साइकले खड़ी हुई है गाड़ियां खड़ी हुई है एक कुछ रास्ता बना हुआ है जो आ जा रहे है बगल से एक पेड़ है जो हरा-भरा पे है बादल सफ़ेद है ।

एक जो नदी हे जिस नदी मे पानी भरा हुआ हे अगल बगल मैदाने बनी हुई हे जिस मैदानों मे हरी घास जमी हुई हे ।

यह जो नदी है जिस नदी मे पानी भरा हुआ है और ओवरब्रिज जो ओवरब्रिज बना हुआ है।

एक बड़ा सा बांध बना हुआ हैं जिस बांध मे पानी भरा हुआ है और ऊपर जो ऊपर साइड मैदान है जिसमे हरे घास जमे हुए हैं।